दुकानें हैं जिसमें लिखा हुआ है हंड्रेड परसेंट ।

ओ लगा हुआ है बोर्ड लगा हुआ है कुछ लोग बैठे हुए हैं।

ये एक पार्क है यहां पर एक फुहारा लगा हुआ है राउंड शेप के अंदर।

आस पास काफी सारे लोग हैं।

कुछ फ्लाअर्स के पेड़ लगे हुए हैं।

साइड में एक रेलिंग बनी हुई है।

यहां पर काफी सारी मशीनें है जिसमें से पेट्रोल आता है।

और पास मे एक कार खड़ी है वाइट कलर की।

औ काफी सारे सिंबल लगे हुए काफी सारे पिलर पे।

कश्मीर रोड है वहां प कुछ लोग जा रहे हैं दूसरी साइड --

काफ़ी सारी कार खड़ी हैं बाइक खड़ी हैं स्कूटी हैं और एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिस पे एक लाइट --

चल रही नी साइड साइड में घास है बीच में रोड है।

ऊपर काफी सारी लाइटे लड़की हुई है।

सामने में भी काउंटर कु कोई कुछ चीजें रखी हुई है बॉक्सेस रखे हुए हैं।

नीचे पानी में काफी सारी रेत है।

नाव पे जाल रखा हुआ और उसके पीछे एक आदमी और है जिसने हाथ में डंडा पकड़ा हुआ है।

यह एक रोड साइड एरिया है यहां पर--

रोड के साइड में काफी सारी कीचड़ है गंदगी है दूसरी साइड --

एक दीवाल है जिसपे चो--

नीचे कूड़े वाली गाड़ी जा रही है एक बाइक है।

और अनार है केला है।

नाशपाती है पपाया है केला है। काफी सारी चीजे हैं।

एक फोटो है यहां पर।

में चौड़ी सी हैं नीचे काफी सारे पेड़ पौधे घास हैं पत्तियां हैं।

एक डिवाइडर दिखाई दे रहा है जिसपे काई लगी हुई है।

यहां पर और दूसरी साइड एक सड़क बनी हुई--

पिला रखा हुआ है बैग रखा हुआ है कुछ किताबें हैं पानी की बो--

और पास में ही एक पैंट टंगी हुई है।

ये एक वर्किंग एरिया है यहां पर--

नीचे वॉल भी काफी सारी इमारते दिखाई दे रही दूर--

और काफी सारे छोटे छोटे से--